यह किसी एक कार्य स्थल का दृश्य लग रहा है जहाँ पर --

जिसमे अपने गंतव्य को जाने के लिए कई प्रकार के लोग उसमे बैठे हुए हैं और आगे हम भारत का एक तिरंगा भी चित्रित किया हुआ देख सकते हैं और बस काफी बड़ी --

और प्रचार पत्रिकाएं दीवाल पर --

हम इस तस्वीर में देख सकते है कि यह एक व्यायाम शाला का दृश्य है।

जहां पर के कई प्रकार की वस्तुएं हमें नजर आ रही हैं।

इस तस्वीर में हम एकअ --

हम इस तस्वीर में देख सकते हैं कि दो तीन लोग क्रिकेट खेल का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ पे गेंद और बल्ले का हम --

धान देख सकते हैं। वहाँ पर एक कोच खिलाड़ियों को प्रशिक्षित कर रहा है। यह बहुत बड़ा मैदान जो हरा भरा नजर आ रहा है और काफी भव्य और मनोरम दृश्य है।

यह दृश्य में हम देख सकते हैं कि यह बस के रुकने का स्थान है जहाँ पे --

हम इस तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ किसी प्रकार का समारोह हो आयोजित किया जा रहा है।

इस तस्वीर में हम यह देख सकते हैं कि यहाँ पे एक चार पहिया गाड़ी का की मरम्मत की जा रही है।

वस्त्रो को प्रदर्शित कर रहा है और यह --

इस चित्र में हमें देख सकते हैं कि एक गाय हमारे सामने है। जिसका रंग काला है एवं दो व्यक्ति एक स्त्री एक पुरुष उस चि --

और वह एक बेहद ही मनोरजक नृत्य का प्रदर्शन कर रहे हैं और यह कोई पारंपरिक नृत्य लग रहा है और इसमें कई सारे अ बिजली के उपकरण भी दिख रहे हैं।

हम इस तस्वीर में देख सकते है कि यहाँ पर एक --